बगल में एक आदमी खड़े हुए हैं |

एक दीवाल है। वहाँ पे दही लिखा हुआ है उसके बगल में एक शटर है शटर के बगल में दो डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक होटल है लाइटिंग लगी हुए है छज्जा है वहां पर पेड़ लगा हुआ हैपर्दा लगा हुआ है ऊपर शीशे का बना हुआ है इधर नीले परदे लगे हुए हैं नीचे टाइल्स लगे हुए हैं।

वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ एक दिवाल है दिवाल के ऊपर खम्बे लगे हुए लाइटिंग है।

लम्बा सा खम्भा लगा हुआ है उसमें लाइट लगा हुआ है एक रेड कलर की दीवार है छोटे छोटे पो--

अ गंगा घाट का सीन है यहाँ पे नावे खड़ी हुए है पानी है।

सामने एक दुकान है एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक ढाबा है| बजरंग ढाबा एंड रेस्टोरेंट | यहाँ पे लोग आते है खाना खाते है।

यह लमही में हैं मुशी प्रेमचंद स्मारक लमही में हैं | यहां पे कुछ आमदी लोग खड़े हैं कुछ लड़के बेठे हैं ।

छोटे छोटे पौधे हैं ।

यह एक मेडिकल है। यहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई हैं छोटे-छोटे बोतल हैं कुर्सी रखी हुई है यहां पे हर किसिम का दवाइयाँ मिलते हैं । यह एक जर्नल स्टोर है।